तालाब दिख रहा है हरे कलर के पेड़ दिख रहे हैं।

ब्लैक कलर की एक टाट पट्टी दिख रही है एक मिरर दिख रहा है।

दिवार दिख रही है सफ़ेद कलर का दिवार दिख रहा है।

सफेद कलर के कुछ पीलर दिख रहे हैं।

कुछ गुम्बद सफेद कलर की दिख रही हैं।

अ एक स्विमिंग पूल में कुछ लोग दिख रहे हैं हरे कलर का पेड़ दिख रहा है।

कुछ तिरंगे लगे हुए दिख रहे हैं।

एक बिल्डिंग्स दिख रही है खिड़कियां लकड़ी की दिख रही है।

पत्थर के कुछ पिलर रखे हुए दिख रहे हैं एक मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिख रही है ।

एक जाली दिख रही है ब्लैक कलर की।

एक मंदिर दिख रहा है मंदिर में दो मूर्तियां दिख रही है।

अ कुछ अ हरे कलर की लाइट्स लगी हुई दिख रही है।

एक हरे कलर का टार्ट दिख रहा है सफेद कलर की टाइल्स --

कुछ बिल्डिंगस दिख रही है एक पिलर ब्राउन कलर का दिख रहा है।

कुछ विंडो दिख रही है जो एक --

अ हरे कलर का बैनर दिख रहा है।

कुछ स ऑरेंज कलर के जैकेट पहने हुए दिख रहे हैं।

कुछ आदमियाँ दिख रहै है एक मीटर लगा हुआ दिख रहा है।

कुछ सरिए लगे हुए दिख रहे हैं कुछ --

अनॉथर मेरेकल इन द वर्ल्ड दिख रह है रेड कलर का एक बैनर दिख रहा है।

कुछ कुप्पियां रेड कलर की रखी हुई दिख रही है कुछ नीले कलर की कुप्पियां दिख रही है।

कुछ पेड़ दिख रहे है पेड़ के तने दिख रहे है आसमान दिख रहा है।

ब्लैक बैरी दिख रहा है कुछ डमी रखे हुए आदमियों के दिख रहै है एक हरे कलर का--

लेडिसें सफ़ेद साड़ी में दिख रही है लेडिसों के हाथ में मोमबत्ती दिख रही है।

हरे कलर की शटर दिख रही है एक चप्पल रखी हुई दिख रही है अम्म उन अलमारी में कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है।

कुछ बायर दिख रही है कुछ खंबे दिख रहे हैं।

कुछ अलमारी के खंद दिख रहे हैं अलमारी में कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है और तेल के डब्बे दिख रहे है।

हरे कलर का नेट दिख रहा है कार के कुछ पार्ट रखे हुए दिख रहे हैं।

हरे कलर के पेड़ दिख रहे हैं ब्लू कलर का एक टीन लगा हुआ दिख रहा है ।

हरे कलर के पौधे दिख रहे है हरे कलर के पेड़ दिख रहे है।